और ए_सी दालकोटी स्कीम में हे उसके पास में एक लाल रंग का घर भी बना रखा है।

यह लैब है ई अ यहां पर लैब में जांचे होती है दवाइयां वगैरह पड़ी हुई हैं यहां पे इंजेक्शन वगैरा और यहां पे पेशेंट आए हुए हैं।

ये प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है यहां पे बहोत का बड़ा काले कलर का गेट बना हुआ है यहां पर --

ये एक गार्डन है यहां पर आने जाने के लिए वॉकिंग करने के लिए बना रखी है पेड़ पौधे बहोत बड़े पेड़ पौधे भी यहां पे लगे हुए --

ये मस्जिद है ये मस्जिद सुल्तान फाटक वाली--

ओम नर्सरी है जहां पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे और घास भी मिलती है ये फार्म हाउस में यहां पे तैयार किया जाता है।

है यहां पर झूले लगे हुए फिसल पट्टी वगैरा बहुत सारे झूले लगे हुए हैं यहां पर और ये गार्डन है यहां पर खेलने के लिए बच्चों को।

यहां पर ये नर्सरी है यहां पे पेड़ पौधे मिलते है खूब सारे और फूलो से अलग अलग गुलाब के--